ब्लू कलर के एक बोर्ड पे कुछ लिखा गया है। आखिर ये क्या है किसी को नहीं पता है लेकिन तारे गई हुई हैं इसके ऊपर से।

यहाँ पे एक लड़का जो है एक चित्र में कपड़े स्त्री कर रहा है जो की काफी सारे कपड़े है और ये सफेद कपड़े की स्त्री कर रहा है उसकी दुकान में।

कुछ फव्वारे उठ रहे हैं ये एक गार्डन की तरह लग रहा है कही सारे लोग बैठकर इसका आनंद उठा रहे हैं।

चमकता हुआ लाइटिंग भी रखा गया है काफी साफ सुथरा नजारा है।

इस खेत में थोड़े बहोत से छाड़ है।

थोड़ा सा खेत है कुछ झाड़े हैं और--